इस तस्वीर में ढेर सारे लोग दिखाई आ रहे हैं जो वाइट कलर के कपड़े पहने हुए नजर आ रहे हैं।

यह मार्शल आर्ट और जूडो की ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसमें लाइट और फैन भी लगाए हुए हैं और यहां पर ढेर सारी खिड़की दिखाई दे रही है।

घर के ऊपर ए_सी लगाया हुआ है और एक खिड़की दिखाई दे रहा है।

और यहां पे कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही है और एक पोल लगा हुआ नजर आ रहा है जिस पे कुछ तार टंगे हुए दिखाई दे रहें है।

के आसपास ढेर सारी ट्रेन की पटरिया दिखाई दे रही हैं जिनके नीचे गिट्टी रखी हुई है।

कोमल श्रृंगार एवं गिफ्ट पहले से दिखाई दे रहा है यहां पे लिखा हुआ।

इन सब में अलग अलग सामान रखे हैं यहां पर कुछ स्प्रे जैसी चीजें और कुछ बुक जैसी चीजें दिखाई दे रही है।

यहां पे एक स्विच बोर्ड जिसमें तीन तीन वायर्स लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में एक बड़ा ट्रक दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है नीचे में उसके टायर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे बाहर में प्लास्टिक लगाया गया है और बाहर में कुछ फूल भी दिखाई दे रहे हैं जो ब्लू व्हाइट और रेड कलर के हैं।

सामने में एक व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है।

उपर में कुछ बल्ब लगाए हुए हैं और बाहर में कुछ पेड़ और एक रोड दिखाई दे रहा है।